बहुत सारे फुल अच्छे अच्छे सुंदर-सुंदर नजर आ रहे हैं यहाँ पे वाइट (white) ब्लैक कलर में कुछ नजर आ रहा है।

सीढ़ी है गाय का चारा वारा है और पत्थर नजर आ रहे है गाय नजर आ रहे है।

यहाँ पे गुब्बारे लगे हुए है अधिक चीज़े है यहाँ स्टेज भी लगा हुआ है लाइटें लगी है बहुत प्यारा सीन दिखाई दे रहा है यहाँ लड़किये लड़की लोग खड़ा होके इधर देख रहे है बहुत प्यारा सीन है ये --

सब नजर आ रहा है दाल ऊल सब नजर आ रहा है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सीसा में बंद किया गया है यहाँ--

यहाँ पर बहुत ब अच्छी सजावट हुई है और सोफा लगा हुआ है साइड -साइड में पौधे लगे है गमले में --

घर में कपड़ा सूखा है वो भी नज़र आ रहा है बहुत प्यारा दिखरा है।

ये एक बैडरूम है यहाँ पे बड़ा सा बड़ा सा पलंग है उसमें तकिया लगे हुए हैं और उसे बहुत अच्छे से सजावट किया गया है।

यह पुलिस स्टेशन का कलर पिंक कलर मे है और उसकी खिड़कियां ब्लू है यहाँ पे बहोत सारे पत्थल भी नज़र आ रहे है बहोत हरी भरी जगह दिख रही है बहोत प्यारा सीन --